जो बैठे हैं उसके पास एक बैग है उसने बे सफेद रंग की शर्ट पहनी है काले रंग की जींस पहनी हुई है।